यह माता का मंदिर दिखाई दे रहा हैजोकी काली माता दिख रही है और इनकी मूर्तियां दिखाई दे रही है पीछे की और कर्टेन लगे हुए है ।

यह फुटवयर की शॉप दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारी लाइन से फुटवयर की दुकान दिखाई दे रही है जो की एक बिल्डिंग मे लगी हुई है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे है यहां पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है जो की खेल रहे है दौड़ रहे है और एक हेंडपम्प दिखाई दे रहा है।

सजी हुई है ये दुकान जो की बैलून लगे हुए हैं रेड और व्हाइट बेड के सिरहाने रखे हुए हैं।

ये एक मंदिर दिखाई दे रहा है जहाँ रेड कलर का पर्दा लगा हुआ है घंटिए दिखाई दे रही है। रेड कलर का--

कप्बोर्ड में रखी हुई हैं एक कुर्ता दिखाई दे रहा है जैकेट दिखाई दे रही है जो वाइन कलर की है बहुत खूबसूरत दिखाई दे --

ये एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो की आ स्टेप बाइ स्टेप बना हुआ है और इन पे कुछ लाइटे लगी हुई हैं इधर बहुत सारे मतलब जोड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहाँ और व रेलिंग दिखाई दे रही है यहां से जालियाँ पीछे कुछ पेड़-पौधे और भी दिखाई दे रहें हैं रेड कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहें हैं।